दीवाल में एक बोर्ड लगा है बोर्ड में कुछ कागज चिपके हैं दीवाल को गुब्बारे से सजाया गया है।

सामने कुछ औरतें साड़ी पहनकर खड़ी हैं हाथों में कुछ सामान है।

मैं के पास तीन महिलाएँ खड़ी हैं उनके बगल में एक इस डिजाइन बनी हुई है।

एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर पीले रंग का बोर्ड लगा है जिसके ऊपर डॉक्टर लाल पैथ लिखा है।

सामने एक टेबल है टेबल के ऊपर नैपकिन रखा है नैपकिन के ऊपर एक खाने की चीज़ का पीस पड़ा है।

दीवाल पे हरे रंग की घासी कारपेट से सजावट की गई है।

थोड़ी ही दूर पे एक हरा भरा एक पेड़ है बोंडी बॉल बनी है।

एक गैस रक्खी है गैस के ऊपर एक तवा रक्खा है।

कमरे के अंदर आदमी हरे रंग के स्टूल के ऊपर बैठा है उसके हाथ में एक कपड़ा है आदमी के बगल में एक टेबल है।

हरे हरे पेड़ है नीचे कुछ पत्थर टूट के गिरे हुए हैं।